ढेर सारी रोड पर गाड़ियां दिखाई दे रही है कुछ कारें लगी हुई हैं और कुछ बाइके भी दिखाई दे रही है उसके पास एक डस्टबिन रखा गया है।

ऊपर में एक पेड़ लगाए ऊपर में एक बल्ब लगाया हुआ दिखाई दे रहा है।

और यहां पे नीचे में कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही हैं।

यहां पे नीचे में कुछ प्लास्टिक और कुछ छोटे छोटे टायर जैसे चीज रखे हुए नजर आ रहे हैं जो वाइट एंड ब्लैक कलर के हैं।

लोग एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे नीचे मे एक पोल लगाया हुआ नजर आ रहा है।

यहां पे एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

और इसके आसपास में एक बड़ा सा एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है।

पोस्टर टंगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें एक लडका नजर आ रहा है उसमें कुछ लिखा हुआ भी है।

और यहां पे ऊपर में ढेर सारे करकट और कुछ बोर्ड्स टंगे हुए नजर आ रहे है।

यहां पे ढेर सारे झंडे के छोटे छोटे पीसेस लगाए हुए नजर आ रहे हैं जो दूर दूर तक फैले हुए हैं।

और यहां पे बाहर में ढेर सारी खाने की पिक्चर बनाई हुई है।

और उसके पीछे में एक यलो कलर के घर के पास कुछ छतरी दिखाई दे रहे है।

और उसमें छोटे छोटे चीजें छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हैं लगे हुए।

इस तस्वीर में एक शटर दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है।

नीचे में डुअल सेल्फी कैमरा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और उसके अंदर में भी कुछ फोटो और भी टंगे हुए नजर आ रहे है।

और यहां पे ढेरों सारे फूल वूल लगाए हुए नजर आ रहे हैं।

और यहां पे ढेर सारी तार दिखाई दे रही है जो मोड़ के रखी हुई नजर आ रही है।

यहां पे एक बाइक लगाया हुआ नजर आ रहा है।

यह तस्वीर में ओ_एम पी_वी_टी आई_टी_आई लिखा हुआ नजर आ रहा है और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और यहां पे कुछ जार भी रखे हुए हैं कुछ कुर्सियां भी दिखाई दे रही हैं।

किसी चीज का डेकोरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है।

और सामने में एक रोड बनी हुई नजर आ रही है जिसके पास कुछ ऑटो कुछ गाड़िया दिखायी दे रही है।

और यहां पे अपना लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और इसके बगल में ढेर सारी खिड़कियां रखी हुई नजर आ रही है जिन सब में शीशे लगाए हुए हैं।

ढेर सारे अपनी नजर आ रहे हैं और उसके पास में कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए नजर आ रहे हैं और कुछ पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

ब्लू कलर की है और यहां पे ट्रैक्टर के बड़े बड़े टायर भी दिखाई दे रहे है।

और कुछ चार्ट पेपर और एक बल्टी दिखाई दे रहा है।

एक फूलों की माला दिखायी दे रही है।

और यहां पे एक ब्लू कलर कि चीज भी रखी हुए दिखाई दे रही है।